यह फोटो एक हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है जहां पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है एम_एन हॉस्पिटल ।

यहां पर एक पेड़ भी लगा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा है जिसे हमने--

जो के इलेक्ट्रॉनिक दुकान की दिखाई दे रही है यहां पे लकड़ी के अलग अलग सांचे बनाकर उसमें बहुत सारे वस्तुएं रखी हुई है।

यह फोटो एक पब्लिक पार्क की है जिसके अंदर जाने के लिए एक भी गेट बनाया गया है जो कि एक फूलों की माल जाली से बनाया गया है।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

एक कांच का काउंटर भी बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी मिठाईया रखी है यहां पर मिठाई के कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यह फोटो एक पब्लिक पार्क की है जहां पर एक गैंडे का चित्रन बना हुआ है जिस पर दो एक बच्चा बैठा है।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

यह फोटो एक किसी बिल्डिंग का का निर्माण कार्य चल रहा है यहां पर दो करम कमरे बना बने हुए हैं।

यहां पर सजावट के लिए कुछ अह झरने भी लगे हुए हैं यहां पर बहुत सारी लड़कियां भी आई हुई है।

यह अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं सामने गैलरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारी लाइटें और फूलों से सजावट की गई हुई गैलरी बनी हुई है।

व्यक्ति ने नीले कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का कच्चा पहना हुआ है।

यहां पर एक लाइट भी जल रही है पर पास में एक पार्क बना है जिस पर स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है।

और एक सड़क जा रही है जो की पक्की है।

यह फोटो किसी एक तालाब या झील की है जिसके पास बहुत दो नावें खड़ी हैं आसपास बहुत सारे पत्थर भी रखे बड़े-बड़े पत्थर है।

इस फोटो में दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसका गाड़ियों का नाम है अल्टो ये गाड़ी मारुति सुजुकी की है।